ये तो एक बड़ा सा टावर है।

बोहोत अच्छा लग रहा है ये काफी ज्यादा झाड़ी उडी है इधर और ग्रीन कलर का इस का ये एंटरी गेट है।

काफी डिजाइनिंग लग रही है ये --

एंड काफ़ी सुंदर ये स्टेज है और ये अपनी शेरवानी को पहना हुआ है अपनी वाइफ का वेट कर रहा है ये स्टेज पे।

और मै इसमें अगर बताऊ तो पेड़-पौधे भी इस में लगे हुए हैं।

और येल्लो कलर में इसका पूरा ये बेल्डिंग है और ऊपर --

एक ने छाता लगा रखी है। धुप बा काफी तेज़ है। टोपी लगा रखी है इन्होंने और ये आ --

और ये हरे भरे पहाड़ है सुंदर नजारा है। यहाँ से फोटो वोटों लेना काफी अच्छी चीज है।

और ये अ दो तीन मतलब औरत --

शिवम हेयर ड्रेसर पता सुमेर सागर।

ये एक छोटा सा टेंपल है जो भगवान की मूर्ति इसके अंदर लगी हुई है सामने।

हाऊ टू वर्क दैट ? वो इस वर्क को कैसे करते हैं ? वो ये नही बता रहा इसमें।

एक अंकल हमारे है जो फ़ोन से बात कर रहे है उनके बगल में एक महाशय हैं।

ये भी तो हमारे यार सब जितने भी हैं गोरखपुर के तो इस में पिक्चर्स हैं।

डेकोरेशन अच्छी की गयी है आई थिंक क्रिसमस का

ए टीबीएस के शोरूम का कोई शोरूम हाउस है जहां पे --

खूँटे में बाँधी हुई है और उस का बछड़ा भी बांधा हुआ है।

और उसके सामने माता दुर्गा का एक मूर्ति रखा हुआ है और इसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है।

ब्लैक कलर की मूर्ती है। मैं नही बता सकता ये किसकी मूर्ती है। बूट काफी सुंदर में दिख रहा ये चित्र।

और ये पता नहीं हमें गुस्से --

ये बारकोड पेमेंट के लिए बारकोड रखा हुआ है और ये लड़कियों के आईब्रो इब्रो के डिजााइंस कुछ पीछे फोटो में में दिख रहे हैं।

एक रूम है जिसमें एक बंदे के पैर में चोट लगी हुई है।

आ कुछ मैटेरियल बनाने होते है तो हम इसका युज करते हैं। ये बड़ा-सा बहोत बड़ा होता है। इसमें काफी ज्यादे --

उसके बगल में एक काउंटर दिख रहा है।

और एलजी के टीवी यहां पर हमें दिख रहे हैं।

ऊब सारे भगवान के फोटोस् और --

खड़ा होकर के एक मिनट में ट्रेनिंग दे रहा है डांस करने का हाउ टू --

जिसके सामने एक रोड है उस रोड पे एक कार चल रही है उसके बगल में छोटा सा गार्डन है जिस पे (पर) घांस और छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं।

जो करीब में जा रही और वाइट कलर की कार बिल्डिंग के नीचे खड़ी हई है। ये हमेशा दिख रहा है इसको --

और ऊँट के पीछे खूब बड़ा सा डैम दिख रहा है जो हमारे पानी को कंट्रोल एंड आउट करता है।

और ये ब्लैक कलर का शीशा पूरा है उसके बगल में हमे ये क्या बोलते हैं इस को ग्रिल दिख रहा लोहे का।

और आर्टफिशल फ्लावर से इसको सजा रहे हैं।

आई थिंक ये बैंक है और बैंक में काफ़ी लोग पैसे वैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं।